एगो रोज का गुलदस्ता रखा हुआ है इसमें बहुत सारे रेड रोज रखे हुए हैं रोजर्स हैं जो कि बड़े-बड़े हैं छोटे-छोटे एंड इनमें ग्रीन कलर की पत्तियां लगी हुई है रोज के साथ।

और एक बड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है ग्राउंड के आसपास में ये स्टेडियम टाइप बना हुआ है मकान टाइप बना हुआ है ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं जो की खेल रहें हैं कूद रहें हैं।

और आसपास कोई बड़े-बड़े पेड़ दिख रहें हैं लाइट के खम्भे दिख रहें हैं जो की ग्रीन कलर की शर्ट में हैं वह दिख रहा है उनके हाथ दिख रहें हैं साइड से।